पंचायत भवन जैसी लग रही है जिसमें काफी सारे लोग एक साथ इकठे हो रखे हैं।

चक्क्र टाइप दिखार दिखाई दे रहा है।

शेप गोल राउंड शेप में है।

डैम के पानी का बाव बहुत ज्यादा लग रहा है।

और जिसमे सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं और लेक्चरार की बात पर ध्यान दे रहे हैं।

हॉस्पिटल के बाहर काफी सारी बाइक्स और स्कूटी खड़ी हुई हैं।

महेन्द्रा की एजेंसी की लग रही है क्योंकि इस --

इस तस्वीर में जैसे मैं देख पा रही हूँ। एक व्यक्ति है जोकि केन्टीन में बैठा हुआ है।

टेसनर स्टेशन है जोकि--

जिसमे सभी महिलााओ ने साड़ी पहनी हुई है।

तस्वीर मुझे किसी आ घुमने वाले स्थान की लग रही है जिसमे एक व्यक्ति --

दीवार पर बो मारिया की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

और एक ए.सी भी दिखाई दे रहा है।